उसके आस-पास हमें सौंदर्य निखार के लिए बहुत सारे वस्तुएं दिख रही है।

वहीं पास में हमें एक ऑटो रिक्शा नजर आ रहा है।